दीवाल पे सफेद और लाल रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

बैग रखे हुए हैं। दीवाल पे एल_ई_डी लगी हुई है।

एक चौराहा है चौराहे के पास में एक लोहे का स्टैंड लगा हुआ है।

पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय लिखा हुआ है।

ऊपर राधा कृष्ण के मुकुट लगा हुआ है।

हरे पेड़ के पास कुछ छोटी-छोटी पीली पत्तियां भी हैं।

मकान के ऊपर काले रंग की दो टंकी रखी हुई है।

वॉल पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है जो जल रही है।

पीछे दीवाल पे एक घोड़े की तस्वीर लगी हुई है।

इसपे मां ललितेश्वरी इंटरप्राइजेज लिखा हुआ है।

एक मंदिर सा है मंदिर के ऊपर बहुत सारी लाइटे जल रही है।

नीचे गेट है गेट के पास बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

बहुत सारा सामान पन्नियों में पैक रखा हुआ है।

लीक पीछे गाड़ी के लाल रंग की लाइट लगी हुई है।